गले में बैग टांगे हुए दिखाई दे रहे हैं दो यहां पर बनियान पहने दिखाई दे रहे है।

यहां पर काले काले पाइप और भी यहां पर दिखाए गए हैं छोटे छोटे लंबे लंबे पाइप है ये।

एक लड़का पीछे की तरफ दिख रहा है और आगे ब औरते बच्चे दिख रहे हैं गाड़ी जाते हुए दिख रही है।

पेड़ पौधे यहां पर दिख रहे हैं दिन का यहां पर समय है।

बहोत ही छोटे छोटे स्टैचू बहुत ही सुंदर कला कृति यहां पर की गई है।

और यहां पर ईंटे का दीवार भी दिखाई दे रही है पेड़ पौधे भी दिखा--

कहां पर आगे एक आदमिल है यहां पर वेल्डिंग का काम भी कर रहा है।